बहुत सुंदर लग रहा है। गोल्डन कलर का है और व्हाइट कलर का है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई स्कूल का चित्र है। यहां पर बहोत बड़ा जालीनुमा गेट लगा हुआ है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक घर है जो कि ऑरेंज कलर का है। यहाँ पर जालीनुमा --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा प्रतीत होता है की यह कोई --

यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा प्रतीत होता है की या कोई जंगल जैसा है यहाँ पर --

यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई बहोत बड़ा --

एक ठेला दिखाई दे रहा है।

सुबह का समय है। बहोत ही प्यारा नजारा दिख रहा है।

कपड़े के सुंदर से सजाकर और यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे है।

और दूर से देखने में पे हर जगह पेड़-पौधा ही नजर आ रहा है। एक खंभा दिखाई दे रहा है दूर से देखने में। और --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि देखने में ऐसा प्रतीत होता है की कोई महल का चित्र है |